यह कोई पिलर की खुदाई हो रही है। यह पोक्लैन गाड़ी लगे हुए है। यह पोक्लैन से बहुत अच्छा खुदाई होता है। यहाँ पिलर खड़ा करने वाले है। कोई --

यह एक ए.टी.एम. है यह ए.टी.एम. से लोगों को काफी सुविधाएं मिलती है यहाँ बहुत सारे लोग इस ए.टी.एम. में आते हैं पैसा निकालने के लिए बहुत ही सुविधाजनक --

यह एक ऑफिसर का घर है यह बहुत ही बड़े ऑफिसर है यह घर के बाहर दो तीन गाड़ी भी खड़े हैं बहुत सारे लोग यहाँ मिलने के लिए आते हैं यह बहुत अच्छे आदमी है ।

यह एक बैंक है । यह बैंक बंधन बैंक है यहाँ बहुत सारे लोग इस बैंक में आते हैं यह पैसा जमा निकासी करते है इस बैंक के शाखा प्रबंधक बहुत ही अच्छे आदमी है ।

यह एक नदी है यह नदी बहुत ही बड़ी है यहाँ पानी फ़िल्टर की मशीन लगाई गयी है जो पूरे शहर में पानी सप्लाई करते हैं यह पानी पीने में बहुत ही अच्छे हैं।

ये काफी हैं यह स्कुल बहुत ही बड़े हैं।